पीछे कुछ मैट रखे हुए हैं कुछ जिम का समान है।

पीछे लाइट जल रही है एक टी_वी चल रहा है नीचे कुछ डिब्बे से रखे हुए हैं।

यहाँ पर कुछ पत्थर हैं बड़े-बड़े कुछ समाधि टाइप के बने हुए हैं बड़े-बड़े टिल्ले हैं।

टोपी ओढ़ रखी है एक लड़का कागज ले रहा है हाथ में जैकेट पहन रखी है।

एक टीचर खड़ी हुई है एक टीचर खड़ा हुआ है हाथ में डंडी ले रखी है।

ऊपर कुछ छोटे छोटे खन्ने बने हुए हैं सफेद कलर की प्लाई लगी हुई है।

नीचे में छोटे छोटे घास उगा है।

नीचे बराबर में दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

टी_टी खड़ा हुआ है जिसके गले में एक बैग है।